मुझे इस तस्वीर में एक ढाबा दिखाई दे रहा है।

उस आदमी ने नीले कलर की शर्ट पहने हुए--

गाड़ी के पार्ट्स दिखाई दे रहें हैं।

अर ई रिक्शा लिए हुए दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक खाली कमरा दिखाई--

यह दुकान जूते चप्पलों की दिख रही है।

कार्डबोर्ड के कार्टून मुझे दिखाई दे रहे--

कई महिलाएं सफेद रंग की साड़ी पेहने हुए--

राम और सीता जी की रंगोली के आस पास--

गेम ज़ोन दिखाई दे रहा है।

तस्वीर पर एक सोफा दिखाई दे रहा है।

यहां एक होटल पर बैठकर--

यह चारों अलग-अलग दिशा पर छोटे-छोटे गार्डन बने हुए मुझे दिखाई --

यह झरना खूबसूरती से बहते हुए एक लाइन पर दिख रहा--

यहां पर कई सारे पेड़ पौधे मुझे दिखाई दे रहे हैं।

यह काली सफेद लाल भूरी--

अलग अलग कलर की गाय दिखाई दे रही--